ये सब भीड़ कंट्रोल करने के लिए बना है ये कोई बहुत बड़ा मंदिर लग रहा है ।

काफ़ी अच्छा ट्रेडमील है । कई कम्पनियों का ये आदमी बेच रहे हैं । बोहोत अच्छे से सुसज्जित तरीके से रखी हुई हैं ।

मार्केट में ई-रिक्शा खड़ा है ।

सिक्स पैकस बनाने तक --